तो इलेक्ट्रिकल का बहुत बड़ा टॉवर जो है वो दिखाई दे रहा है और ऊपर जो है वो खुला आसमान दिख--

यहां पर एक आदमी जो है वो पैदल जा रहा है और यहां पर जो वॉल वॉल जो बनी हुई है उसके ऊपर काफी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स की हुई है।

ऑरेंज येलो कलर के फ्लावरस से डेकोरेशन किया हुआ है सामने दो बड़े से फूलदान है यहां पर रेड कलर का कारपेट दिखाई दे रहा हुआ है।

यह फूलदान की बॅक साइड पे एक लेडिस खड़ी हुई है और उसके ऊपर अगर कारपेट में सीडीओ के ऊपर देखेंगे तो एक अम्म आ आदमी खड़ा हुआ है।

अ यहाँ पर सामने एक छोटा सा डाकघर दिया हुआ है ऊपर एक अम्म लेबल लिखा हुआ है सामने एक गाड़ी खड़ी हुई है।

और इस नदी के किनारे अगर देखा जाए तो काफी सारा कचरा जो है वो जम जमा हुआ है।

और नीचे जो है वो ग्रीन कलर की घास लगाई हुई है और आस पास में बड़े बड़े पौधे पेड़ लगाए हुए है।

और उसी के पीछे अगर देखी जाए देखा जाए तो अम्म ओ इससे भी बड़े बड़े पेड़ लगे हुए।

पर्पल कलर का है वहां पर दो बैग्स रखी हुई है और जो सामने का दरवाजा जो है वो जो की क्लोज है।

ये एक गार्डन का एरिया दिखाई दे रहा है यहाँ पर जो है बीच में काफी सीधा पा सुंदर पानी का फवारा जो है वो बहुत बड़ा फवारा दिख रहा है।

गाड़ियां जो है वो यहां पर--

हा बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं कुछ छोटे छोटे पौधे दिख रहे।

और बीच में जो है काफी सारी जगह खाली दिख रही है।

आ कुछ लोग बस की ओर बढ़ रहे हैं।

अ जो है वो झूला दिखाई दे रहा है।

जिसे कि आकाश झूला बोलते हैं बहुत बड़ा।

अ बिल्डिंग के बैकसाइड में हैं।

बड़े बड़े आ पेड़ यहां पर दिख रहा है दिखाई दे--

छोटे छोटे पेड़ भी यहां पर दिख रहे--

येलो कलर के भी है कुछ लोग यहां पर शॉपिंग करने के लिए आए हुए है।

दो गाड़ियां यहां पर खड़ी है।

अ एक लड़का जो है वो खड़ा है।

और दो व्यक्ति जो है वह खड़े दिखाई--

बड़े बड़े पौधे दिखाई दे रहे।

क्या हुआ है और यहां पर जो डेकोरेशन किया है वो रेड --

यहां पर एक अंडर कंस्ट्रक्टेड --

और इसका जो है वो कंस्ट्रक्शन श अ शुरू--

ये एक फ्रूट मार्केट है यहां पर एक आदमी बैठा हुआ है जिसने--

और यहां पर जो बच्चे हैं उन्होंने भी--

यहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है।

और ब्लू कलर का जीन्स पहना हुआ है और यहां पर--

लगाई हुई है और एक--